ये एक गार्डन है जिनमें बहोत सारी--

और थोड़ा दीवाल व्हाइट कलर का है और पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

लगा हुआ है नीचे एलवेस्टर रखा हुआ है और कुछ बोरे हैं और सामान है और --

ऑरेंज ब्लैक कलर लोहे का गेट है और येलो ऑरेंज कलर का पंडाल लगा हुआ है।

ये एक मछली का दुकान है जिसमें मछली हुई हैं और

जहां पे तीन परियां बनाया हुआ है गोल्डन कलर का जो काफी--